और सीढ़िओ पे दो बंदे चढ़ रहे हैं और आस पास बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं नजारा बहुत अच्छा--

सुप वगैरा लगा हैं मैगी वगैरा लगे हैं बिस्किट लगे फेवीक्विक लगे हुए हैं